ये एक हिल स्टेशन । जिसका रास्ता ढलान की तरह है। जिस टेढ़ा मेडा बना हुआ है।

उसके आगे बोहोत बडा मैदान है जो खाली पड़ा है। उसके पे बोहोत सारे पेड़ लगे हैं और --

उसकी छत व्हाइट कलर की है। उसकी दीवारें व्हाइट कलर की हैं उसकी जमीन ब्राउन टाइल की है।

इसकी छत पे एल_इ_डी लाइट और ग्रीन लाइट लगी है और ए_सी लगा है।

पिंक कलर से लिखा हुआ है उसके साथ में एक लोगो बना हुआ है ब्लू कलर का। उसके नीचे एक कांच का डोर है।

यह एक रेस्टोरेंट है। जिसका नाम चायोस है। चायोस डिजाइनिश लिखा हुआ है येलो कलर में उसके --